जैसे की चॉकलेट है बिस्कुट है और भी बहुत कुछ --

पिलहाल यहाँ पर चार चक्का एक कार रखा हुआ है।

और ये काफी दूर से में से लोग इसे देख रहे है।

और पीछे बहोत सूखी-सूखी --

जिसे हम लोग डिम लाइट कहते हैं और --

जिसके लिए यहाँ पर बहोत ही अच्छे से डेकोरेशन करके लोगो की बैठने की व्यवस्था की गयी हैं।

जो कि एक बेड पे लेटा हुआ है और मसाज करवा रहा है।

और चारों महिलाये सिंपल हैं।

पढ़ रहा है। यहाँ पे ग्रोसरी में ऑइल मैग्गी बिस्कीट और चॉकलेट वगेरा रखी हुई हैं।

जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सम्बंधित समाने मिलती हैं।

जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वाशिंग मशीन रखा हुआ है।

यह किसी नेता का ऑफिस दिखाई पढ़ रहा है।

यह किसी ऑफिस का तस्वीर हैं।

टेबल के ऊपर बहोत सारे सामान भी रखे हुए हैं जैसे कि पिन कलम वाटर बॉटल --

जहाँ पर जल बहोत सुख गया हैं।

यह एक जंगल का तस्वीर है। यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े पेड़ और घने-घने --

यहाँ पे कुछ जानवर भी नज़र आ रहे है।